और ट्राली से गेहूं को लोड किया जा रहा है।

जाली के दूसरी तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और ज्यादातर यहां पर लाइटिंग लगी है चारों तरफ लाइटें का कलर सफेद है काफी ही अलग व्यू यहां पर दिखाई दे रहा है।

और उसके ऊपर सीमेंट से बने हुए चार घोड़े दिखाई दे रहे हैं।

और गार्डन में बहुत सारे चेयर्स लगी है बैठने के लिए--

जहां पर बहोत सारी चूड़ियां गहने वगैरह सेल का काम हो रहा है।

स्टार्टिंग में ही स्टेडियम दिखाई दे रहा है स्टेडियम के पीछे कॉलेज है जो काफी बड़ा बना हुआ है।